इस तस्वीर में एक डाकघर का एटीएम दिखाई दे रहा है जिस पर अंग्रेजी में लिखा है इंडिया पोस्ट एटीएम ।

तस्वीर में एक डी_जे है। इसपे लिखा हुआ है राज डी_जे साउन्ड उसकी लाइटे जल रही हैं। नीचे उसका फर्श भी दिख रहा है।